इनके दरवाजो पर नीले रंग के पर्दो डले हुए है।

और ऐक्स बाहर की तरफ लोग खड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

एक बहुत बड़ा नदी के ऊपर पूल दिखाई दे रहा हैं जो की काफी दूर तक जाता हुआ नज़र आ रहा है।

बाहर की तरफ एक टेडी बियर वाला कूदने वाला बच्चो का झूला लगा हुआ नज़र आ रहा है।

हमे यहाँ पर बहोत सारे टमाटर नज़र आ रहे है जो की किसी डलिआ में रखे हुए नज़र आ रहे है ।

और वो डाँडीया खेलते हुए नज़र आ रहे है सामने की तरफ एक बिल्डिंग है जिसमे लाइट जलती हुई नज़र आ रही है जिसके ऊपर संगीत महाविद्यालय लिखा हुआ है।

और यहाँ पर बहोत बड़ा चर्च नज़र आ रहा है जिसका लाल रंग का दरवाजा है।

उसके बाहर काफी सारी बाइके और स्कूटीया खड़ी हुई है।

ये बाहर काफी सारे गाड़िया खड़ी है दो सफ़ेद रंग की कार खड़ी है ।

के ऊपर पैरासूट बंधा हुआ है और उसके पास में आदमी खड़ा हुआ है।

पीछे में कोई छोटे बच्चे है जिनको दूसरा आदमी जुडो सीखा रहा है।

हमें यहाँ पर एक स्कूल नज़र आ रहा है जो की लाला और सफ़ेद रंग है।

हमें यहाँ एक पार्क नज़र आ रहा है इस चीज़ में हाथी की मूर्ति बनी हुई हैं जोकि सूड़ उठा कर खड़ी हुई है।

मे यहाँ एक जहग नज़र आ रही है जिसमे एक तरफ काफी सारे बाइके स्कूटीया खड़ी हुई है।